लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग खड़े हुए हैं | यहाँ पे चेयर वगैरा भी लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक दुकान दिखाई दे रही है। जिसके दिवाल का कलर रेड है।

और नीचे जमीन भी दिखाई दे रही है और यहाँ पे दुकानें दिखाई दे रही हैं। उसमें चद्दर शीट है।

कुछ पत्थर वगैरह भी पड़े हुए हैं यहाँ पे। घास भी उगी हुई दिखाई दे रही है। कुछ माकन वगैरह भी बने हुए हैं।

एक हुई दिखाई दे रही है और एक चद्दर भी पड़ी हुई --

ये कुछ पेड़-पौधे ये भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और नीचे ज़मीन दिखाई दे रही है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और रोड भी बना हुआ है। नीचे जमीन दिखाई दे रही है।

ये दिवाल दिखाई दे रही जिसका कलर व्हाइट है। यहाँ पे रोड भी बना हुआ है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें कुछ पैकिट वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ बर्तन भी रखे हुए दिखाई दे --

सीढियाँ बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

और कुछ पौधे वगैरह भी लगे हुए हैं। यहाँ पे बहोत सारी ईंटें लगी हुई है। जिनका कलर व्हाइट और रेड है।